साथ ही कुछ लोग पियानो वे ढोलक बजा रहे हैं।

इस रेलवे स्टेशन का नाम मुझे कटनी जंक्शन लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस रोड के बीचो बीच एक बड़ा सा टोल नाका भी लगा हुआ है।

सामने मुझे एक बहोत ही बड़ी सी--

जिसमें बहोत सारे आदमी बैठे हुए नजर--

इस कमरे में मुझे लोहे की राडे रखी हुई नजर आ रही हैं।

लखा हुआ नजर आ रहा है।

ठीक सामने मुझे एक बहोत ही बड़ी सी दुकान नजर आ रही है।

इस स्टेज पर मुझे बहोत सारे लोग गाना बजाते व गाते हुए नजर--

इस मंदिर का नाम मुझे धर्म हरी श्री चित्रगुप्त मंदिर कटनी मध्य प्रदेश नगर --

साथ ही बहोत सारे लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है।

ठीक सामने मुझे एक बड़ा सा पेट्रोल पंप नजर आ रहा है।

ठीक सामने मुझे एक बड़ी सी फर्नीचर्स की दुकान नज़र आ रही है।

ही बड़ी सी आभूषणों की दुकान नजर आ रही है।

इस दुकान का नाम मुझे कमल ज्वेलर्स लिखा हुआ नजर--

बोहोत सारी मिठाइयां रखी हुई नजर आ--